और जो काले कलर दिख रही है और कुछ बेन्चें रखी हुई है जो सफेद और गुलाबी कलर की दिख रही है ऊपर लाइटे जल रही है वो सफेद कलर की दिखी रही --

यहाँ एक घर है वो भी हरा कलर का दिख रहा है अच्छे--

यहाँ एक घर दिख रहा है जो सफेद कलर का और मेहंदी कलर का दिख रहा है इसके आगे दो गाड़ीयां खड़ी हुई है और--

है ऊपर छत्तर है जो सफेद कलर की दिख रही है कुछ पेड़-पौधे दिख रहे हैं।